ये एक आ ऑफिस की तरह दिखाइ दे रहा है जिस में तीन आदमी है जो आप में एक दूसरे के हाथ को टच करे हुए है।

तीनो के तीनो ने हाथ में एक जग रखा है और तीनो सामने देख रहे है ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फ फोटो खिचा रहे है।

ई बिना प्लास्टर किए कुछ पेड़ लगे हुए हैं अशोक के पेड़ दिख रहे सामने कपड़े डले हुए हैं।